यहाँ पर हमे एक रोड बनी हुई दिख रही है जिसपे काफी सारे कारीगार काम भी कर रहे है यहाँ पर टीन से बना हुआ कुछ दिख रहा है।

और एक ताला भी लगा हुआ है जिसके साइड बनी बाउन्ड्री पर भी कुछ लिखा हुआ है।